शादी विवाह मे जे कुर्सी रखलो जाय छै एय पर लड़का-लड़की बैठलो रहय छै वरमाला----

यहाँ घर के अंदर काम ही चली रहल छा मजदूर लोग तीन तीन लोग छा

इ फोटो योगा के टीचर योगा करय छै इ शरीर स्वस्थ रहय छै।

और कोई बहुत सारा बीमारी से मुक्ति मिले छै योगा करय छै और ढेरी लोग योगा करी रहलो छै करे छै।

घर के अंदर बेडरूम छीका कुर्सी लागलो छै---

में एकरो बगल मे देखो केतना अच्छा से कटिंग करलो भगवान के पास जाना चाहिए---

उसके गेट के मतलब घर का दरवजा या गेट बोलो जिकी की ग्रिल के वल्हलाय लोहा लोहा आता है स्टील से मिला लोहा आता है वह एक जहग इ सब सब ठीक के लगवल है ।

हा ये अच्छा रहई छे इस दुर्घटना भी नई होई छे और अच्छा से क्रॉस भी करयै छे एक दूसरा पर --